इसके ऊपर एक व्यक्ति भी खड़ा है। इसके अगल बगल बहुत सारे लकड़ी भी रखे गए हैं।

यह एक बहोत ही बड़ा हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल का नाम ऊपर की ओर लिखा हुआ है डायचिअल हॉस्पिटल

यह एक बहुत ही बड़ा पार्क है जिसमे बहोत सारे झूले बनाए गए है फिसलने वाले झूले।

यह एक बहुत ही बड़ा गेट का चित्र है जो कि दरवाजा में लोहा का गेट लगाया गया है।

इसमें बहोत ही बड़ा एक गेट है आ इसके अगल बगल बहोत सारे लंबे लंबे पेड़ है।

यह एक क्लास रूम है जिस क्लास का कलर गुलाबी कलर है इसमें एक बोर्ड भी लगाया गया है।

जिसमें यह सरस्वती जी का पूजा भी होने वाला है।

यह एक बहुत ही बड़ा मॉल का चित्र है जिसका नाम महिंद्रा आर्केड है।

यह एक ही बहुत बड़ा बिल्डिंग है। जो की यह एक ब्लॉक है जिसका नाम ऑफिस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है।

ये बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं सारे डॉक्टर अपने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के ऊपर बैठे हैं।

इस्मे एक तीन व्यक्ति है जो कि दुकान चला रहे हैं और एक व्यक्ति समान ले रहा है जिसमें बहुत सारे सारे समान भी टागे हुए--

और तीन चार कलर के पाइप भी गोले गोले कर के रखे गए हैं जो कि हरा कलर गुलाबी कलर पिंक कलर ।

इसमें एक बाइक भी लगा गया है लगाया गया है और इसके बाहर एक हल्का सा तालाब है छोटा जिसमे सीढ़ी बनाई हुई है इसमें दो लंबे लंबे बहौत सारे बड़े बड़े टावर भी है।